दिखाई दे रही है खिड़कियां भी बनी हुई हैं।

खड़ा है। बस के दो टायर दिखाई दे रहे है और बस के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

नीले रंग की चद्दर बिछी हुईं हैं।

बहोत सारी घास दिखाई दे रही है।

और इसका दरवाजे पर कांच लगा है।

और कुछ गाड़ियों को सही करने के लिए ऊपर की तरफ--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

इसमें अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं।

ट्रक के अंदर कट्टे रखे हुए है बाहर की तरफ --

इसमें एक रेड कलर की गाड़ी--